हॉल में कुछ बच्चे चटाई बिछाकर लेटकर व्यायाम कर रहे हैं।

टेबल पर बहुत सारे बच्चे बैठ कर चार्ट पेपर पर चित्र बना रहे हैं |

यहाँ पर एक बन रहे मकान के चित्र को दिखाया गया है।

मकान के बाहर बहुत सारे पेड़ पौधो भी दिख रहे हैं।

दीवाल के पीछे बहुत से सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।